वाटरफॉल चलते दिखाए गए हैं।

पहाड़ के दोनों तरफ पेड़ लगे दिखाए गए हैं।

नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई--

सिट लगी हुई है सिट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ अपने हाथों में मोबाइल लिए दिखाया गया है।

जाली टाइप की बनी हुई है कैट में फूल बने हुए हैं।

मुख्य गेट दिखाया गया है यह ब्लैक कलर का गेट है।

यह बाहर साइड एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है गार्डन का गेट दिखाया गया है जो कि व्हाइट कलर का--